यह सब्जी मंडी नजर आ रहा है जिसमें टमाटर मिर्च करेला मुली और साग मटर नजर आ रहा है।

समुन्द्र दिख रहा है इसके दोनों तरफ पहाड़ियां नजर अ रही है और यहां सूखे पत्ते भी नजर आ रहे है आसमान मे थोड़ा बादल दिख रहा है और थोड़े साफ लग रहा है।